और उसकी एक बीच में बाउंड्री भी है यहां पर कुछ पौधे लगाए हुए हैं।

यहां पर एक हॉस्पिटल का रूम है जिसमें एक बेड रखा हुआ है मीटर रखे हुए हैं बहुत सारे वायरिंगस रखे हुए हैं ग्लूकोज स्टैंड है।

बेस क्रीम कलर का है और यहाँ पर ब्राउन कलर का पी_ओ_पी किया गया है दीवार पे--

और न्यूजपेपर रखे हुए है। थैला रखा हुआ हैं। पोलोरिंग भी यहां पर चिप्स हैं।

यहां पर एक सैलून है जिसका नेम सिटी सेंटर सैलून है।

यहां पर इसकी ओपनिंग की जा रही है बहोत सारे यहां पर कुर्सियां रखे गए हैं ग्रीन कलर का कारपेट बिछाया हुआ है।

एक कार का कलर सिल्वर कलर है इसकी डिक्की खोली हुई है और टायर भी इसका खोल कर रखा हुआ है।

कांच के यहाँ पर खिड़कियाँ बनाए हुए हैं एक दीवार पूरी कांच की ही है।

और रोड पे ये बिल्डिंग है धूप है यहाँ पर दिन का समय है।

एक बॉक्स रखे हुए हैं और यहां पर नमकीन भी बहोत सारी है।

यहाँ पर नदी के किनारे बहुत सारी मछलियाँ हैं एक कार्टून में भर के भी बहुत सारी मछलियाँ रखी हुई हैं मरी हुई हैं।

यहां पर एक बैंक है एक्सिस बैंक बोल कर उसके बाहर एक आदमी झाड़ू लगा रहा है।

यहाँ पर एक मिठाई की दुकान है इसमें बहुत सारा तरह तरह के--

है दो और बहुत सारे सीमेंट के थैले रखे हुए हैं यहाँ पर दिन का समय है।

न्यूजपेपर्स बिछाए हुए हैं उसके अंदर कुछ प्लेट्स लगाए हुए हैं ऊपर और दुकान के अंदर बहुत अंधेरा दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक बेकरी है जिसमें एक कांच केस में बहोत सा मिठाई रखे हुए हैं।

यहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड है उसके बाहर बहुत बड़ी एक स्कूल की बिल्डिंग है।

और उसके बाज़ू में और एक बड़ी सी बिल्डिंग है एक झाड़ है यहाँ पर--

यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी हो रही है बहुत अच्छा यहाँ पर डेकोरेशन किया गया है।

एक बड़ी सी एसी है यहाँ पर और रेड कलर की लाइटिंग लगाई हुई है और यहाँ पर कर्टेंस भी हैं।

और यहां पर कुछ छांव टाइप है शाम का समय है यहां पर एक पेड़ भी है।

और एक आदमी ने पर्पल कलर का शर्ट पहना हुआ है ब्लू कलर की जींस है उसकी--

लाईटिंग्स लगी हुई है साथ इस पे और यहां पर दिन का समय है।

बहोत बड़े बड़े स्पीकर्स है इसके कलर ब्लैक एंड ग्रे कलर में है।

और यहाँ पर एक फैन भी लगाया हुआ है और एक बड़ा सा कलमा लिखकर दीवार पर लगाया गया है।

खिड़कियाँ हैं यहाँ पर वाइट कलर की ये बिल्डिंग है उसके सामने एक झाड़ है जिसके ऊपर पत्ते बहुत कम हैं और--

ब्राउन एंड ऑरेंज कलर में उस पर रेड कलर की पट्टियां लगे हुए है और शटर्स का कलर स्काई ब्लू कलर में है और व्हाइट कलर का उसके ऊपर सिंबॉल बना हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं मैट्स बिछाकर कार्पेट्स बिछाकर.--

ये पांच कलर में है बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं येलो ग्रीन व्हाइट ब्लैक एंड नेवी ब्लू कलर के हैं ये--